यहां यहां पर बहोत से कपड़े फोल्ड हुए रखे हैं।

यहां पर कूड़ा कचरा पड़ा है रोड बनी हुई है। रोड के आसपास छोटी-छोटी घास उगी हुई है।

पीछे बहोत सा पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक कुर्सी पड़ी हुई है।

यहां पर एक हैरो है जो नीले रंग का है हैरो पे पन्नी चढ़ी हुई है।